यह एक सड़क का दृश्य है यहा पीछे बहुत सारे पेड़ नजर आ रहाहे है यहा बहुत सारी ऑटो रिक्शा लगी हुई है।

एक होडिंग भी दिखाई दे रही है जिसमे एम_आई_टी_एम लिखा हुआ है।

ये तस्वीर एक मंदिर के बाहर की है। मंदिर के बाहर एक ऑटो रिक्शा लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहा बोहत सारे होडिंग लगे हुए है।

यह एक सड़क की तस्वीर है यहा बोहत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ नजर आ रहे है।

याहा एक स्कूटर भी लगा हुआ है दो लोग खड़े दिखाई दे रहे है।

जो की लाल रंग की है यहा बोहत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह एक चर्च के बाहर की तस्वीर है यह चर्च का रंग सफेद है।

इस महाविध्यालय का नाम संत राव महाराज विध्यालय है यहा एक काले रंग का बोर्ड लगा हुआ हैं।

और बगल में बहुत सारी खिड्किया नजर आ रही है।